कुछ लोग बैठे हुए है जो भगवा कलर की धोती और कपड़े पहने हुए हैं। कुछ लोग खड़े हुए हैं।

यह पिक्चर किसी वाटर पार्क की है।

जिसमे एक सैलून हेयर व सैलून है जिसकी ओपनिंग है जिसमे की बाहर बहोत सारे गुब्बारा लगा हुआ है।

एक व्यक्ति जोकि बहार से अंदर की ओर आ रहा है। एक टेबल पे एक बोतल रखी हुई है जोकि ब्लू पर्पल कलर की है।

एक फंक्शन की है जिसमें पिंक कलर का कॉम्बिनेशन है लाइटें- लाइट लगी हुई है।

यह ऊपर आसमान दिख रहा है एक घर दिख रहा है शॉप वो है।